यहाँ पे बहुत सारी पुरानी ईंट लगी हुई है और छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

यहां पे सफेद कलर के कुछ पट्टी जैसे दिखाई पड़ रही है।

एक बाइक हुई है उसके पड़ोस में एक आदमी मोबाइल चलाता हुआ खड़ा हुआ है।

यहां पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जो लोहे का लगा हुआ है।

ये एक घर है यहां पर चार पहिया गाड़ी खड़ी हुई है।

और यहां पर बहुत बड़ी सी टीन पड़ी हुई है उसमें लोहे के एंगल लगे हुए हैं।

और चारों ओर से बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं नीचे फर्श पड़ी हुई है।

यहां पे दो तीन कुर्सियां पड़ी हुई है जो बहोत अच्छे से सजी हुई है।

ऊपर बड़े से बड़े पोस्टर लगे हुए और यहां पे एक दो पेड़ दिखाइ पड़ रहे हैं।

ये एक दुकान है यहां पर एल_सी_डी वगैरा मिलती है।

नीचे फर्श पड़ी हुई है और बहोत सारी चटाई बिछी हुई है रेड कलर की।